यहाँ मेरे सामने बड़ी-सी दुकान खुली है इसके बहार बहुत सारे बॉक्स हैं साइकिल कड़ी है डिब्बे रखे हुए हैं और यहाँ बड़ा-सा बैनर लगा है जिसके कलर पीला है।